एक एस_बी_आई बैंक की एस_बी_आई बैंक की ब्रांच है जिसका का नाम चाम राज नगर --

इस चित्र में दिखाया जा रहा है की कुछ महिलाए और कुछ पुरुष एक साथ मिल कर नृत्य अथवा गरबा कर रही हैं।

और कई बच्चे इस पार्क में खेल भी रहे हैं जो की उन बच्चों के टाइमपास करने का जरिया है यह ये पार्क बहुत ही सुन्दर है ये पार्क --

यह रिक्शा किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाता है और यह सिर्फ इलेक्ट्रिक से चलता --

यह नाई बहुत ही सुंदर बाल कटिंग करते हैं ये इन लोग का हुनर होता है और यह दुकान भी काफी अच्छी है बड़ी है।

ऑल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है | इसके बाहर एक कार और कई सारी मोटर्स --

उत्तर प्रदेश जिला जालौन में है यह उरई से करीब बीस किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये घर बहुत ही सुंदर लग रहा है।